सफेद कलर का घर है जिसपर छत ढली हुई है लाल कलर की बगल में एक च-झोपड़ी है जो लाल कलर की है निचे कुछ ब-ब बैठने की टेबले रखी है जो सफ़ेद कलर की है नीचे कुछ गाड़ी रखी --

पीछे एक हॉर्मोनियम रखा है बीच में एक अख़बार है और एक हैडफ़ोन रखा हुआ है साइड से एक कंप्यूटर चालू है उसके बगल से एक गिलास रखा हुआ है पीछे--

निचे से एक पहाड़ है उसमे पेड़-पोधे हैं सामने एक घर बना हुआ है सफ़ेद कलर का घर है जिसमे खिड़कियां बनी हुई हैं गेट लगे हुए हैं।

बड़े - बड़े रखे हुए हैं बड़े बड़े ढेल रखे हुए हैं पीछे बर्फ का पानी है चारों तरफ से दीवालें निकली हुई हैं साइड से कुछ पर्वत निकल रहा है पानी का और पीछे और भी कुछ पर्वत हैं।

उन पेड़ों में कुछ सफेद-सफेद फुल खिले रहे हैं बगल से कुछ पेड़ लगे हुए पर्वत पर कुछ काय लगी हुई है हलके-हलके पौधे लगे हुए हैं ऊपर खुला आसमान है नीला बादल हो --